यहाँ एक गैरेज है गैरेज में एक व्यक्ति --

यहाँ आस-पास में भी बहोत अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे हैं।

खेती है खेती मे एक टप्पड़ है और --

और घर के सामने कुछ व्यक्ति खड़े है।